सामने हमें श्रीमती साड़ी कलेक्शन दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक आदमी दिख रहा है जो पूल --